और उसके पास में और दो कुर्सियां भी है।

ये आंटियां यो योगा कर रही हैं और एक दो गेट हैं और एक खिड़की है।

बहुत सारे चले आए हैं और वो भी हवन कर रहे हैं अपने अपने--

एक दुकान है उसमें बहोत सारी--

और पटरी भीं हैं इधर और उनके नीचे फत्थर हैं।

कि यह कार सुधरने की शॉप है।

हरियाली पेड़ पौधे बहोत सारे हैं और सामने इलेक्टिक भी है।